जिसके ऊपर इंडिगो लिखा हुआ है।

और एक साइड क्रेशर डाला गया है एक काले रंग के चेयर --

खरीद सकते हो इसके साइड में कुछ दुकानें भी दिख रही--